आ आसमान खुला हुआ है आसमान का रंग नीला है।

प्राउड बट नेवर सेटिस्फाई का बोर्ड भी लगा हुआ है।

दूसरे तरफ पेड़ लगे हुए हैं बीच में से सीढ़ियां जा रही हैं।

कुछ लोग ओटले पर भी बैठे हुए हैं और वह कुछ सत्संग सुन रहे हैं।

एक गुलदस्ता सफेद रंग का है जिसमें लाल रंग के फूल है।

और एक चद्दर भी लगी हुई है जिसका रंग नीला है।

यहां पेट्रोल भरा जाता है कुछ लोग कतार में खड़े हुए हैं।

जहां बहोत सारे हवाई जहाज़ हैं।

यह एक छपरे की दुकान दिखाई दे रही हैं।

यहां एक टेबल है जहां दो मटके भी रखे हुए हैं और यहां कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।